ग्राउंड है जिसके ऊपर हरी- हरी घास उग रही है सामने स्टेडियम बना हुआ हे जहा पे अहः जीने बने हुए हे लोगो के बैठने के लिए बाउंडरी पे रेड और वाइट कलर का पेंट है।

अ-घना जंगल जैसा दिख रहा है बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है साइड मे एक हनुमान की मूर्ति लगी है नीले कलर का दुपट्टा ओढ़े है हाँथ मे गोल -गोल तंबू है।

एक मन्दिर है जिसके अंदर मूर्ति रखी हुई है अ लकड़ी का आसपास बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है साईड मे एक बहुत बड़ा सिंहासन रखा हुआ है।

यह दिख रहा जिसके ऊपर झडे लगे हुए है साइड पाच छे बासो बन्दे हुए है दीवारे दिख रही है जो की ईटो की है।

उसका गुम्मद टूटा हुआ दिख रहा है ये आसमान में एक चुडिया दिखाई दे रही है उड़ती हुई पेड़ो के बीच से सुरज की रोशनी आ रही है बोहत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है सामने एक जाली दिखाई दे रही है।

इसके बाहर एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है स्टील का है जालियों का दरवाजा बना हुआ है धूप की रोशनी से बहुत सारे अक्ष दिखाई दे रहे हैं सामने--